ये एक बस है इसमें हम ट्रेवल करते हैं ।

इस बाग़ में फूल फुलवारी है गार्डन है और भी कई झूले वगेरा है।

यह एक ग्राउंड है जिसमें की लोग फ़ूटबॉल क्रिकेट इत्यादि गेम खेलते हैं ।

अकस में उ पेंटिंग लग रही है यह एक पे पेंटिंग है जिसमें की बच्चे --

यह एक काफी आकर्षक सोफा है जो की--

काफी गप् - शप कर रही है और इन्हें --